इस चित्र में कुछ लोग लाइन से बैठकर फोटो क्लिक करा रहे हैं और एक पीछे जी कृष की मूर्ति बनी हुई है।

और उस साइड भी एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पर कुछ चित्र बना हुआ है पीछे कुछ फूल माला बने हुए हैं और स्टेज भी लगा हुआ है।

और रैक में कुछ ना कुछ सामान रखे गए हैं जो कि--

दुगनियों से सजाई गई है और उधर कुछ लाइटें लगी हुई है जो कि देखने में--

एसी के बाहर पर्दे भी है और वहां पर ऊपर एक एसी भी लगी हुई है इधर कुछ बैग रखे गए हैं और--

इस चित्र में एक स्टेज को दर्शाया गया है जहां पर कुछ हाईलाइट लगी हुई है।

और इधर भी कुछ टवीटर और डीजे भी लगे हुए हैं और पीछे बिल्डिंग बनी हुई है बिल्डिंग पर लाइटिंग की गई है।

इस चित्र में चार पांच लड़कियां दिखाई दे रही हैं जो कि कुछ सामान खरीदने के लिए आई हुई है।

पोस्टर भी लगा हुआ है एक पोस्टर किसी बैंक का है।

इस चित्र में काफी सारी कुर्सियां दिखाई दे रही हैं जो कि स्टील की बनी हुई है और वहां पर एक--

मेज बना हुआ है जिसके पीछे दो कुर्सियां रखी गई हैं उसके ऊपर एक एलईडी दिखाई दे रही है।

के ऊपर कुछ सामान रखे गए हैं और लेफ्ट साइड में दो कुर्सी और एक बड़ी सी मेज और उसके पीछे भी एक कुर्सी--

और इधर कुछ अन्य सामान रखे गए हैं और उसके पीछे दरवाजा भी बना हुआ है।

इस चित्र में एक रेड कलर की बस और एक ग्रीन कलर की बस दिखाई दे रही है कुछ औरत जा रही है और कुछ पुरुष--

इस चित्र में एक कार दिखाई दे रही है उसके पीछे एक मकान बना हुआ है जिसके ऊपर एक टंकी दिखाई दे रही है।

छोटे-छोटे खंबों से रेछा गया है और पीछे कुछ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

किसी देवता की प्रतिमा है और उसके बगल में एक छोटी सी बिल्डिंग बनी हुई है इधर भी एक छोटी सी बिल्डिंग है।

इस चित्र में इधर एक सोफे वाली कुर्सी रखी गई है और इधर भी--

मेज लगी हुई है मेज के बगल में भी कुछ लोग बैठे हुए हैं एक व्यक्ति इन लोगों को कुछ खाना पानी दे रहा है ऊपर--

वक्त बोल रहा है उसके पीछे गुब्बारे लगे हुए हैं ऊपर पंख भी लगे हुए हैं।

यहां पर सेल्स भी लगाए हुए हैं जो की नौ सौ निन्यानबे में भी--

इस चित्र में एक बहुत से बड़े हाल को दर्शाया गया है यहाँ पर बहुत से खंभे लगे हुए हैं ऊपर छत में कु --

इस चित्र में दो-तीन कार को दर्शाया गया है जो कि कार एजेंसी --

बिल्डिंग टाइप का बना हुआ है जिसके ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है और यहाँ गैरेज के सामने भी एक पोस्टर लगा हुआ है।

और वहाँ पर ए_सी भी लगी हुई हैं और इधर कोने में भी कुछ कपड़े रखे गए हैं।

इस क्षेत्र में एक फार्म हाउस को दर्शाया गया है जहाँ पर बहुत सी मुर्गियाँ दिखाई दे रही हैं।

इनको एक जाली के अंदर पैक किया गया है इनको कतारों में पैक किया गया है इधर तीन लाइन है और इधर भी तीन लाइन है।

एक मुर्गी वहाँ ऊपर बैठी हुई है ऊपर कुछ लाइट लगी हुई हैं और ऊपर टिन भी छाया गया है।

कुछ एक लीटर की है कुछ आधे लीटर यानी पाँच सौ एम_एल और कु --

ढाई सो एमएल की है और यहां पर काउंटर में कुछ मिठाइयां भी रखी गई हैं और कुछ कोल्ड्रिंक भी--

इस चित्र में दो बर्गर दिखाई दे रहे हैं और उसके पीछे कुछ कुर्सी और मेज मेज के ऊपर कु --

वहाँ पर एक व्यक्ति फोन में कुछ देख रहा है जोकि बैठा हुआ है ऊपर कुछ लाइट और पंखे भी लगे हुए हैं।

गत्तों में पैक है और कुछ पैकेट में पैक हैं और इधर एक कुर्सी भी दिखाई दे रही है नीचे एक मोटर भी दिखाई दे रहा है।

और यहाँ पर दो तीन नाव भी दिखाई दे रही हैं और उधर --

किनारे की तरफ कुछ बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैँ और वहाँ पर भी कुछ नाव हैं कुछ उधर भी बिल्डिंग बनी हुई हैं।

यहाँ छोटे छोटे गमले भी हैं और हरे कलर की मैट भी बिछाई गई है पीछे एक --

इस चित्र में दो बगुले दिखाई दे रहे हैं जोकि सफेद कलर के हैं और उनकी चोंच --

इस चित्र में कुछ घास फोस दिखाई दे रहे हैं और कुछ पौधे --

गमलो में लगे हुए हैं जोकि कैक्टस के हैं और इधर गमलो में गुलाब के पौधे और उसके बगल में भी कोई पौधा लगा हुआ है।

उसके पीछे एक बड़ा सा पेड़ भी है और उसके लेफ्ट में एक --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

इस चित्र में एक घर दिखाई दे रहा है जिसके सामने एक वालीवाल की पिच बनी हुई है।

दोनों तरफ वालीवाल डालने वाला भी बना हुआ है और वहाँ पर एक टेन भी छाया हुआ है उसके बगल बगल में --